यहां पर लोग गांव में दूध लेकर भी आते हैं और यहां पर बेच देते हैं। लोगों के लिए यह सुविधा बहुत अच्छी है।

एक नदी हैनदी के पास बहुत पानी भरा हुआ है और एक मकान भी बना हुआ है जिस मे लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत हरी भरी घाँस --

लगी हुइ ऐसा दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है और पास से एक सड़क भी निकली हुई है जिस पर लोग बाइक से जा भी रहे हैं।

लोग सुबह से इसी घास मे लेटते हैं।

यहाॅं पर बहोत से पेड़-पौधे लगे हुए हैं।